यहाँ पर काफी सारी गाड़िया खड़ी हुई है। यहाँ बाहर एक सफाई कर्मचारी का ट्रक भी खड़ा है। यहाँ एक पेड़ भी है।

जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर एक एम्बुलेंस जैसी वैन दिखाई दे रही है। इस वैन का रंग बहुत सुन्दर है इसके ऊपर परफेक्ट लिखा हुआ है इस पर काफी सारी डिज़ाइन बने हुए हैं।